घर के आगे की टाइल्स सफेद है और बीच में काली पट्टी है जो की काफी सुन्दर चमक रही है घर में काफी उजाला नजर आ रहा है।

बाउंड्री के उस पार एक सड़क भी दिखाई दिए सड़क के किनारे बारूद है तथा उस पार एक--

बाहर के और भी हेंगर स्टील की और मूर्ति नज़र आ रही है तथा ऊपर खुला आसमान नज़र--

इनके पास टायर भी नीचे पड़ा हुआ है और कई टूल और पार्ट्स पड़े हुएं हैं।

लाइटे लग रखी है नीली सफ़ेद तथा दीवारे भी सफ़ेद और पीले कलर की है।